ये एक ऑफिस का तस्वीर है जिसे मे बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का--

ये सामने एक मैदान है जहाँ हरे-हरे दरख्त है और एक बोहोत बड़े विशाल दरख्त है।

ये किसी गार्डन का तस्वीर है और इस गार्डन में येलो कलर की फूल एक कटिंग की हुई लाइनिंग बॉउंड्री बनी हुई है।